जो की एक मेट पे कर रहे हैं योगासन एक पेड़ भी खड़ा हुआ है और --

एग्जाम के लिए कुछ लोग वेटिंग करते दिखाई दे रहे हैं।

और ग्रीन कलर की स्वेटर पेहेने है एक।

जो की बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। मंदिर ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है।

यहाँ मुझे रेत दिखाई दे रही है और सीमेंट में मिला हुआ अ अ गिट्टी भी दिखाई दे रही है मसाला बना हुआ लेबर दिखाई दे रहे हैं अ एक सफ़ेद कलर की --